एक बिजली का खम्बा भी लगा हुआ है कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

यह देखिए कि यह दो दुकान है बाबा बैजनाथ और एक मोटरसाइकिल भी है। वहाँं मोटरसाइकिल के उधर एक औरत भी है दुकान में दो सेठ बैठे हुए हैं।

यह देखिये यह मकान बिल्डिंगे और यह कुछ लड़कियाँ भी हैं।

इसके यहाँ कुछ कूचे भी रखें हुए हैंकुछ बाटी या और ऊपर भी ऐसे ही और इसके बगली भी दुकान है।

और यहाँं पर एक पेड़ भी है और एक मकान भी है और यहाँं पेड़ सा भी दिखाई दे रहा है तार भी केबल भी दिखाई पड़ रही है वहाँं पे कुछ --